एक कंप्यूटर है कुछ काम कर रहे बहोत सारे गुब्बारे-उब्बारे है यहाँ मेरे को लगता है नया दुकान खुला हुआ हैयह--

कंप्यूटर बहोत सारे दिख रहे टेबल दिख रहा कुर्सी दिख रहा है यह लाइट सभी प्रकार की व्यवस्था है यहाँ।

--माटी के बहुत सारे पुतले है इधर पेड़ है एक ठो है मिट्टी का की खिलौना है का का यार --

एक लड़का बालकनी में खड़ा हुआ है घर बहुत सुन्दर है|

इधर लाइट उत् सभी प्रकार की चीज है इधर है कुर्सी टेबल घर उर जो भी है गेता होगा--

एक सीडी है लाइट है हर टेबल कुर्सी और हैं।